आसमान सब खुला है और यह दिन का समय है।

जो की खप्पर का है उसके किनारे मे भी पेड़ दिख रहा है।